इस फोटो में हम देख सकते हैं की एन.ये.एम इन्टर कॉलेज है ये। ये कॉलेज के बाहर का है और ये अँधेरे में रात का फोटो है। यहाँ पर एक अंकल --

फ़ोटू में हम देख सकते है कि ये किसी स्कूल के बाहर का है जिसका नाम मॉडर्न पब्लिक स्कूल वेलकमस यू लिखा हुआ है।

और यहाँ पे बच्चों के फोटो लगे हुए हैं। एजुकेशनल ये ओरेंज कलर का पेंट है। फिरोजी कलर का भी पेंट हैं और --

बहार दो ओटो खड़े हुए हैं दी.एम.डब्ल्यू और इसमें बोहोत सारी खिडकियां हैं।

फोटो के अन्दर हम देख सकते हैं की यहाँ पर एक रोड है जहाँ पर से दिख रही है और पीछे पूरे में ग्रीनरी हैगी घास लगी हुई है पुरे में घास लगी हुई है।